यहाँ सस्विमिंग पूल है यहाँ पे कुछ लाइट्स लगी हुई है यहाँ बच्चे--

आस-पास सोफे दिख रहे है नीचे टाइल्स दिख रही है और सामान रखा हुआ है उनका वो दिख रहा है।

और एच.डी.फ.सी. बैंक का बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है बाहर लोग खड़े हुए है और आगे गेट दिख रहा है हॉस्टल दिख रहा है।

और एकए एक लेडीज का हाथ दिख रहा है और एक टिश्यू पेपर रखे हुए दिख रहै है जो मस्त दिख रही है।

यहाँ पर टेम्पल दिख रहा है गोल्डन कलर मे एक आ गोल्डन कलर मे बना हुआ है पूरा चलवा वाले वी मे एक लेडीज खड़ी हुई दिख रही है आसपास शेर दिख रहै है।

दीवाल दिख रही है लाइट यलो कलर की इस पे बोर्ड टंगा हुआ दिख रहा है इसपे कुछ तस्वीरें टंगी है।

शासकीय कन्या पॉल लिखा हुआ दिख रहा है बलासपुर लिखा हुआ दिख रहा है ऊपर बादल दिख रहै है झाड़ पौधे दिख रहै है।

--कार राखी हुई दिख रही है दीवाल दिख रही है मज आसमान दिख रहा है जमीन दिख--

ये एक घर दिख रहा है कार लग लगी हुई दिख रही है लोगो दिख रही ब्राउन कलर का गेट दिख रहा है सेंट्रल लिखा हुआ दिख रहा है।

इट पड़ी हुई दिख रही है सीमेंट पड़ी हुई दिख रही है दो आदमी काम कर रहे है ऊपर आसमान दिख रहा है आस-पास झाड़-पौधे दिख रहे है सामने ब्लू कलर की बिल्डिंग दिख रही है एक खटिया लगे हुए दिख रहे है।

--नीचे ज़मीन दिख रही है ऊपर आसमान दिख रहा है आसपास पेड़ पौधे लग रहे है और नीचे कच्चा माकन दिख रहा है उसके पास मे एक माकन--

जन साथी ब्रांच पोस्ट ऑफिस लिखा है पीले कलर की दीवाल दिख रही है एक लेडीज बैठी हुई दिख रही है अंदर--

एक मूर्ति दिख रही है जो एक के ऊपर कंधे पर बैठी है और नीचे एक हरी कलर की घास दिख रही है और ब्लैक कलर --

पर बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है ऊपर बोर्ड के बैनर जगह दिख रहा है लोग खड़े हुए उस बैनर को देखते हुए दिख रहे है।